सामने का आसमान साफ़ है आसमान में बादल भी नहीं दिख रहें हैं। निचे जमीन पे आधे जमीन पे पौधे उगे हुए हैं आधी जमीन खाली है।

यहां एक जगह दिख रही है जहां खाली जमीन है हरा-हरा घास पूरा है बहुत सारे बच्चे खेल रहे है।

यहाँ एक ग्राउंड है जहाँ पर व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है बोहत सारे टीम है क्रिकेट खेल रहे है।

यहाँ पे एक स्टेशन दिख रहा है यहां सामने से एक रेलवे आ रहे है नीचे किसी का सामान रखा हुआ है नीला काला और लाल रंग का सूटकेश रखा है।